बाहर बहुत सारा बड़ा बड़ा मैदान खाली पड़ा हुआ है।

कुछ टिशू पेपर रखे हुए हैं।

शटर के बाहर दिखाई दे रहा है।

जो बोरी पर पड़े हुए हैं उनकी साइड में कुछ करेट रखी हुई है।

कैरेट के अंदर भी आम रखे हुए हैं।

आम के ऊपर कुछ आम की पत्तियां पड़ी हुई हैं।

उस पर वातानुकूलित लिखा हुआ है।

इन पर मालाएं टंगी हुई है।

साइड में दो बड़े-बड़े घड़े रखे हुए हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ा पार्क है हरा हरा घास खड़ा हुआ है छोटे छोटे पौधे हैं।

खैनी ये सब चीजें टंगी हुई है।

उसमें एक एक्जास्टर भी लगा हुआ है।

यह एक नया बेड बनकर तइयार हुआ है।

यही एक सब्जी मंडी है जिसमें बहुत सारी मिर्ची रखी हुई हैं गोभी रखी हुई हैं आलू रखे हुए हैं बोरी के अंदर।

घर की रेलिंग बहुत अच्छी हैं।

और इसके अंदर कुछ छोटा आदमी भी है।

धरती पर हरे मैट बिछे हुई है और जहां सामान रखा जाएगा वहां पर पिंक कलर की चद्दर लगी हुई है।

और उनके ऊपर वाले खानों में दूसरे डब्बे रखे हुए है।

यहां पर दो तीन जगह बड़ा बड़े अक्षर में चाणक्य लिखा हुआ है।

साइड में एक पीले रंग का पोस्टर लगा हुआ जिस पर मां वैष्णो लिखा हुआ है।

वो बिल्डिंग पर शीशे शीशे लगे हुए हैं।

पीछे मशीन पर एक कागज की फाइल टंगी हुई है।

इनमें कुछ छोटे छोटे बैनर टंगे हुए हैं जिस पर बिलिंग रजिस्ट्रेशन ये लिखा हुआ है।

छत पर कुछ कंजील्ड लाइट लगी हुई हैं।

एक आदमी की शर्ट दिख रही है।

यह एक कैफेटेरिया है मतलब एक कैफे हैं।

दीवार पर कुछ पोस्टर और स्टीकर लगे हुए हैं।

यहां पर एक बड़ी सी एजेंसी की तरह बना हुआ है।

इस पर फर्स्ट चॉइस एनी कार सर्विस लिखा हुआ है।

छत में कुछ लाइटें और कुछ पंखे लगे हुए हैं।

जो दीवार पर सीडी की तरह बना हुआ है।

एक सब्जी में हरा धनिया लगा पड़ा हुआ है।

जो नीली पन्नी पर है उसकी साइड में तराजू रखी हुई है।

एक पत्थर से बंधा हुआ है।

साड़ी पर छापा बना हुआ है मोर के पंख जैसा।

यह एक घड़ियों की दुकान है।

अलग अलग कलर की घड़ियां हैं कुछ सोन सोने की जैसी रंग वाली घड़ी है।

यह एक ताऊ द ढाबा ढाबा है।

न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर एक पोस्टर लगा हुआ है।

बहुत सारे आदमी और औरतें खड़ी हुई हैं।